इस तस्वीर मे हमे जंगल दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा हैऔर पहाड़ दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है जंगल दिखाई दे रहा है बहुत से --

इस तस्वीर में हमे बहुतसी मुर्तीया दिखाई दे रही है स्मृती चिन्ह लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और सीट लगा हुवा दिखाई दे रहा है लकड़ी के माल दिखा दे रहा है माल दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

कुर्सी दिखाई दे रहा है दरवाजा दिखाई दे रहा कुछ बोर्ड दिखाई दे रहा बिजली दिखाई दे रहा बिजली का वायर दिखाई दे रहा घडी दिखाई दे रहा है।

हॉल की तस्वीर दिखाई दे रही है जहा सोफा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और बिजली का वायर दिखाई दे रहे है बहोत से लोग दिखाई दे रहे है बहोत बड़ा गुफा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है यहां हरे भरे सूखे भी घास है और सूखे पेड़ भी है।

तस्वीर मे हमे एक अ बहुत बड़ा पुरानी ईमारत की तस्वीर दिखाई दे रही है जहा बहुत बड़े हाथी का मूर्ति बना हुआ है सभी इमारतों मे बहुत सारी मुर्तिया बनी हुई है।

और लाइट लगे हुए दिखाई दे रहे है बिजली के वायर दिखाई दे रहे है और स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा है।